यहां पर मुझे एक बड़ा सा लेडिस कॉर्नर दिख रहा है।

और मुझे कुछ और सामान भी दिख रही हैं जो पीछे की तरफ रखा हुआ हैं।

और मुझे अह ग्रीन कलर की रेलिंग दिख रही है।

और मुझे एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है।

ब्राउन ऑरेंज और ब्राउन और मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं जो ऊपर के तरफ हैं।

मुझे कप दिख रहा है टेडी बेयर दिख रहा है कुछ और सामान भी दिख रहा है।

एक गाड़ियां दिख रही है और मुझे एक ऑटो रिक्शा दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक दुकान दिख रहा हैं इस दुकान के अंदर बहोत सारा समान दिख रहा हैं।

बहुत सारे पुतलों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं और मुझे दुकान की अंदर एक चेयर नजर आ रहा है जो ब्राउन कलर का है।

यहां पर मुझे बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं।

और मुझे दो पुतले नजर आ रहे हैं मुझे कुछ पौधे नजर आ रहे हैं।

और मुझे कुछ गमले नजर आ रहे हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक रेस्टोरेंट का सेटिंग एरिया नजर आ रहा है।